मैरिज हॉल की डेकोरेशन की हुई दिख रही है।

इस चित्र में सामने एक डाकघर नज़र आ रहा है।

सामने पेट्रोल और डीजल की मशीन नजर आ रही है।

पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा टावर नज़र आ रहा है।

एक खुला एरिया नजर आ रहा है जहां पर दूसरी तरफ एक लाल रंग की बिल्डिंग दिख रही है।

एक छोटी बच्ची और कुछ छोटे बच्चे--

गोल गोल रिंग्स के उपर जंप करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस चित्र मे एक बहोत सुंदर सी बुक लाइब्रेरी नज़र आ रही है।

मंदिर के नीचे एक नलका लगा हुआ दिख रहा है।

एक काले रंग का गेट नजर आ रहा है।

हरे भरे पेड़ लगे दिख रहे हैं सामने--